और सामने बहुत सारे औरते और आदमी लोग बैठे है जो की सभी मैट के ऊपर बैठे हुए है मैट अपना रंग बिरंगा दिख रहा है और वे सभी योगा कर रहे है बगल में एक आदमी बैठा है जो की कुर्सी पर बैठा है।